और इसमें एक ठो बाँस में दो ठो चोंगा लगाया हुआ है आगे बहुत सारा गाये भी है एक दो ठो और लंबा लंबा पेड़ है।

यह बरिया चौक ढालतेगंज में है इसे बाहर एक ठो वाइट कलर का स्कूटी लगा हुआ है।

और एक आदमी सफेद रंग का शर्ट पहन के कुछ देख रहा है।

यह एक दुकान का फोटो है जिसमे बहुत सारा रैक मे समान रखा हुआ है।

इसमें से दो के हाथ में पेन है पीछे दोनों बच्चों के कुर्सी रखा हुआ है डोर्थो और व्हाइट बोर्ड भी है।

और बेंच लगा हुआ है और लाइट लगा हुआ है बड़े बड़े पेड़ है और पौधे भी हैं।

आंटी मास्क पहनी हुई है और पीछे वाइट कलर का घर भी है घर में खिड़की भी है।

यह भी एक नर्सरी का फोटो है जिसमें बहुत सारा पौधा लगाया हुआ है।

यह एक घाट का फोटो है जिसमें ब्रिज भी दिख रहा है।

इस घाट पे आरती होता है एक आदमी बैठा हुआ है साइड में ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी है बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह एक चर्च का फोटो है जहां पे ऊपर एक चर्च भगवान वाला लगा हुआ है मूर--

यह खाने का फोटो है जिसमें बहुत सारा प्लेट दिख रहा है दो प्लेट में खाना लगा हुआ है।

दो तो पंखा रखा हुआ है एक तो स्टैंड फैन रखा हुआ है ऊपर भी एक तो पंखा लगा हुआ है।

छे डेकोरेशन किया हुआ है इसमें से दो लड़की लोग ज्वैलरी पहनी हुई है।

और बहुत आदमी यहां पे खड़े हैं एक आदमी सफेद रंग का टोपी लगाया हुआ है।